इसमें मुझे येलो कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है।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

इसमें मुझे स्कॉलर और इंस्टिट्यूट लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

जिसने सफेद कलर की कोट पहना है।

इस पिक्चर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे स्टेयर्स भी दिखाई दे रहा है।

जिसका कलर सफेद रंग का है।

इसमें मुझे बहोत सारा लोग भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे ब्लू कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे एक स्टार भी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे बिल्डिंग के सामने में ऑटो भी पार्किंग किया हुआ दिखाई दे रहा है।

और पानी के किनारे बहोत सारे पत्थर है।

बहुत सारा लोग भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे ड्रायर भी दिखाई दे रहा है।

और गच्ची भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

इसमें मुझे जमीन भी गिला हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे पिंक कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

मुझे छोटा सा भी दे रहा है।